जैसे अलग अलग देवी देवताओं की जैसे गाय दिख रहीं हैं।

और हाथी है गणेश जी है भोले बाबा है।

और मूर्तियां है शेरावाली माता हैं नीचे भी बहुत बनावटी के बनाई हुई लाफिंग गुड्डा है गुल्लख है।

शटर खुला हुआ है यहां पे बहोत सारी बलिया बंधी गई हुई है पाइप है जो की कोई काम चल रहा है साथ में एक बिल्डिंग है जिसपे--

काले कलर की टाइल लग रही शीशे की यहां और--

यो एक कोई मकान बंद है इसके पीछे बहुत सारे खेत दिखाई दे रहे मिट्टी हैं पेड़ वगैरा दिखाई दे रहे हैं दो टायर है।

और ये इधर बिखरा हुआ एक गोल ब्लैक कलर का टायर है व्हाइट कलर का कट्टा है।

जिसमें बहुत सारी लाइटिंग है कई मंजिल का एक पोस्टर लग रहा है उसके साथ में एक ओर है जिसमें बच्चे हर एक बिल्डिंग पर लाइट है।

और यहां पे एक आदमी गिटार ले कुछ--ये

कुत्ते के उपर कुछ नंबर लगा रखे है। हरे कलर की है संतरे कलर की है काले रंग की है गुलाबी रंग की सफ़ेद कलर की दीवार है।

कैरेट है कैरेट पूरी है बेल लग रही लेडिस आय जिसने परस ले रखा बिल्डिंग के ऊपर लाइट लग रही है नाम लिख रहा--

ए_टी_एम मशीन वगैरह दिखाई दे इसके अंदर एक पुलिस वाला बहुत सारे आदमी है। यहां पर--